यह एक पिक्चर दिखाई देन लाग रही है बहोत बढ़िया सी टेबल के ऊपर है इसमें एक प्लेट के ऊपर खाना दिखाई देन लाग रेया है।

यह एक पिक्चर दिखाई देन लाग रही है इसका ऊपर ना कुछ कि बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रखा है श्री राम।

इसके ऊपर ये कुछ लिख रखा है फाइव स्टार इसमें बहोत बढ़िया लाइट लाग रही है बहोत बढ़िया दिख ना रा बहोत बढ़िया साफ सफाई कर रखी है।

यह एक पिक्चर दिखाई दे नगरी है कि सीट दिखाई द दे दिखाई दे नागरी है।

यह एक पिक्चर दिखाई देन लाग रही बहुत अच्छी सी इसके साइड में नई सारी फाइल दिखे हैं।

और बहोत बढ़िया साफ सफाई दिखो ऊपर तो आसमान भी बहोत अच्छा दिखाई देन लाग रहे--